यहाँ सामने में थोड़ा पानी लगा हुआ है और उसके आगे बहोत सारे पेड़ लगे है।

यहाँ पे क्लास है इस क्लास में सारे बच्चे बैठे हुए है सामने एक येल्लो कलर की टी-शर्ट में एक लड़का है।

ये एक म्यूसिक क्लास है एक तबला बजा रहा है दूसरा कुछ पी रहा है सामने एक वाईट कलर के ड्रेस में एक मेन खड़ा है।

ये एक प्लेग्राउंड है इसमें बहोत अच्छे घास उगे हुए है सामने में एक कलर की बिल्डिंग है उसके राइट में एक पिंक कलर की बिल्डिंग है।

यहाँ एक भैस है और एक भैस का बच्चा है दोनों खड़ा है पास में यहाँ पे भैस के बैठने के लिए कुछ रखा हुआ है।